वहां पर बहोत सारा कपड़ा लटका के रखा है।

इस फोटो में तीन चार चाइकल दिख रहा है।

ऊपर के घर के ऊपर एक रिंग रखा हुआ है।

टेबल पे एक पानी का बॉटल दिख रहा है।

ए_टी_एम के अंदर एक डासबिन दिख रहा है।